नमस्कार इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि यूज़र अपना पासवर्ड कैसे बदल सकता है
हम सीखेंगे कि यूज़र अपना पासवर्ड बदलने के लिए ऑप्शन कैसे दे यदि वे चाहते हैं
यह अधिक समय नहीं लेना चाहिए यह तीन भागों में पूरा हो जायेगा
हम यूज़र को एक फॉर्म देंगे और यूज़र को उनका पुराना और नया पासवर्ड दो बार टाइप करने के लिए कहेंगे
हम उनके पुराने पासवर्ड को जाँचेंगे जो कि डेटाबेस में है
याद रखें वे एंक्रिप्टेड हैं
फिर हम दोनों नये पासवर्डस की तुलना करेंगे यह देखने के लिए कि उनका मिलान होता है या उन्होंने कोई गलती कर दी है
आगे हम नये sql कोड्स का उपयोग करके डेटाबेस को अपडेट करेंगे
अतः पहले मैं मेरा session मेरे member पेज पर शुरू करूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ session_start मिला है
मैं उसे कॉपी करूँगा और उसे अपने पेज पर सबसे ऊपर पेस्ट कर दूँगा अतः हमने अपना सेशन शुरू कर दिया है
हम user नामक बेरिएबल का उपयोग करने की आवश्यकता है जो सेशन के समान होगी जिसे हमने यहाँ सेट किया है
पहले हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि यूजर्स ने लॉगिन कर दिया है यह कोड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उनके पासवर्ड को बदलने की शुरूआत या उन्हें अपना पासवर्ड बदलने से पहले
मैं इस user बेरिएबल को session नेम के रूप में सेट करूँगा जोकि यहाँ है
ठीक है अब हम लिखेंगे if the user exists हम उन्हें उनका पासवर्ड बदलने देंगे अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे you must be logged in to change your password
यह user is logged in के लिए ब्लॉक है अतः मानते हैं कि यूज़र ने लॉगिन किया है लॉगिन की मौजूदगी की जाँच के बाद हमें भरने के लिए उन्हें एक फॉर्म देने की आवश्यकता है
मैं यहाँ अपना कोड एको करूँगा जो हमारा फॉर्म होगा यह स्वतः जमा होने वाला फॉर्म है अतः यह change password dot php पर वापस जायेगा और यहाँ फार्म समाप्त होता है
अतः यह पेज है जिस पर हम पहले से ही हैं और मैं पूर्ण विवरण को सत्यापित करने के लिए चेक का उपयोग करूँगा
फॉर्म की पद्धति post है क्योंकि हम url पर पासवर्ड की कोई भी जानकारी नहीं छोड़ना चाहते हैं
आगे हम कुछ इनपुट बॉक्सेस बनायेंगे पहला old password: जो कि पासवर्ड टाइप नहीं होगा अतः प्रविष्टि गोपनीय नहीं होगी अतः इनपुट टाइप text होगा और name password होगा
मैं एक पैराग्राफ ब्रेक डालूँगा अगला है new password: और मैं एक इनपुट टाइप password बनाऊँगा ताकि यह सबसे छुपा रहेगा name new password होगा
मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक डालूँगा अब इस वाक्य को कॉपी और पेस्ट करें तथा कुछ बदलाव करें लेबल यहाँ repeat new password होगा और name पैराग्राफ ब्रेक के बाद repeat new password होगा
आखिर में हमें submit बटन की आवश्यकता है name submit होगा अतः हम जाँच सकते हैं यदि यह प्रेस हो रहा है तथा वेल्यू change password होगी
ठीक है तो अपने पेज पर जाएँ हमें हमारे पासवर्ड को बदलने में मदद करने के लिए मैं मेम्बर्स पेज में एक लिंक रखूँगा
अभी के लिए मैं विवरण का उपयोग करके लॉगिन करूँगा अभी मेरा पासवर्ड abc है और मेरा यूज़रनेम alex है
लॉगिन पर क्लिक करें यह कहेगा welcome alex यह मेम्बर पेज है सेशन सेट किया गया है यदि हमें लॉगआउट करने की आवश्यकता हुई तो हम लॉगआउट कर सकते हैं लेकिन हमें अपने पासवर्ड को बदलने के लिए अन्य ऑप्शन की आवश्यकता है
अतः हम अपने member dot php पेज पर वापस जाते हैं और मैं दूसरा लिंक बनाऊँगा
और वह होगा change password
और यह change password dot php से लिंक होगा
अतः यदि हम इस रिफ्रेश करते हैं हमें अन्य ऑप्शन मिलेगा यहाँ क्लिक करें और हमें अपना फॉर्म मिलता है जिसे हमने पहले ही बनाया था मैं यहाँ अपना पुराना पासवर्ड और यहाँ अपना नया पासवर्ड टाइप करूँगा
change password पर क्लिक करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है अतः हम जानना चाहेंगे कि यह सब्मिट हुआ है या नहीं यहाँ इस अतिरिक्त लाइन को डिलीट करें
हमें क्या करने की जरूरत है कि if post submit नामक एक if स्टेटमेंट बनानी है जिसका अर्थ है कि क्या यूज़र ने इस submit बटन को प्रेस किया है नाम submit है इसलिए यहाँ हमें submit लिखा मिलता है
और यदि यूज़र ने सब्मिट कर दिया है तो हम यहाँ अपना पासवर्ड बदलना शुरू कर सकते हैं
अन्यथा यदि यूज़र ने सब्मिट नहीं किया है तो हम यहाँ इस कोड को एको करने जा रहे हैं
यदि यूज़र ने पहले से ही सब्मिट नहीं किया है तो फॉर्म सब्मिट करने के लिए उन्हें फॉर्म देना होगा
आगे बढ़ते हैं और इसे टेस्ट करते हैं यह कार्य करता है या नहीं यह देखने के लिए हम यहाँ test एको करेंगे
वापस जाएँ और इसे भरें वास्तव में हमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है हम केवल submit बटन क्लिक करेंगे तथा हमें test का एक एको प्राप्त होता है यह दिखाने के लिए कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सब्मिट हो गया है
ठीक है तो हमें पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है इसे डिलीट करें और यहाँ हम लिखेंगे check fields
हमें कुछ वेरिएबल्स मिलती हैं जिन्हें हमें अपने पुराने पासवर्ड से सेट करने की आवश्यकता है जो कि old password नामक post वेरिएबल के समान होगा हमने उस नाम को यहाँ नीचे अपने फॉर्म में दिया है
और मैं प्रत्येक वेल्यू के लिए इन्हें दोहराऊँगा जिन्हें हम सब्मिट कर रहे हैं
अगला है new password और फिर repeat new password हम इन्हें अभी बदलेंगे
सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इसे हर समय करने का सुझाव देता हूँ old password new password और repeat new password एको करें
यह फॉर्म की मौजूदगी के लिए जाँच करता है क्या फॉर्म सब्मिट हो गया है और फिर हमें वेरिएबल नेम में अपना वेरिएबल और अपना पोस्ट वेरिएबल मिलता है
यदि सबकुछ कार्य कर रहा है यह देखने के लिए हमने जो बॉक्स में टाइप किया है उसे एको करेंगे
अतः मेरा पुराना पासवर्ड abc है और मेरा नया पासवर्ड 123 है change password क्लिक करें और हमें abc 123 और 123 मिलता है
अतः उस फॉर्म की जानकारी सब्मिट की गई है यहाँ वर्तनी की गलती नहीं है मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि मेरा यूज़र एक नया पासवर्ड सेट कर सकता है
अब मैं ट्यूटोरियल को रोकने जा रहा हूँ अगले भाग में मैं सिखाऊँगा कि डेटाबेस में नये पासवर्ड के विपरीत पुराना पासवर्ड कैसे चेक करें कैसे चेक करें यदि नया पासवर्ड और रिपीडेट पासवर्ड मेल खाता है और फिर यूजर्स पासवर्ड कैसे बदलें
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद